नाव रंग-बिरंग का है।

ये मंदिर है मंदिर के बगल में गमला रखा हुआ है गमला में फुल है रंग-बिरंग का।

घूमने में भी अच्छा लगता है।

देखने में अच्छा लग रहा है बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये फिसलता है।

चारो तरफ से लोहा का किवाड़ा लगा हुआ है।

नदी के बगल में एक अशोक का पेड़ है।